गधे के कान दिखाई दे रहें हैं दिखाई दे रही है जो लकड़ी की बनी हुई दिखाई दे रही है सड़क पर काले ककड़ पड़े हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर एक बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के आगे एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब तालाब के पीछे तीन बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं बच्चो ने जैकेट पहनी हुई है।

मोबाइल के डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक डब्बे पर रेडी एक्शन व्हाई नाईटी --

और बहुत सारे मोबाइल रखे हुए दिखाई दे रहें हैं उपर ब्लूटूथ टगा हुआ दिखाई दे रहा है लाइट झली हुई दिखाई दे रही है और भी बहुत सारा सामान टंग रहा है।